मिलता है जो की स्टाइल ए सपोर्ट स्टाइल के नाम से जाना जाता है एवं यहाँ बहुत ही कपड़े सजाकर रखे गए हैं ।

यह एक मैदान है जो कि --

जोकि गरीब बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक यहाँ बहुत ही अच्छा एवं बहुत ही --

यहाँ पर ए.टी.एम. कार्ड में पिन जनरेशन ऐसे करके कई कामो को किया जाता है।

यहाँ पर खेती की गयी है जोकि आम पेड़ एवम--